ये एक स्टोर है और ये स्टोर में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं जो की स्कूल से रिलेटेड बुक्स हैं।

किराना शॉप है इधर बहुत सारे पाउच टके टंगे हुए हैं यहाँ पे एक चिप्स का पैकेट भी है।